ये रोड की साइड में दो लड़कियां जाती दिखाई दे रही है सामने मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है दीवार पर ये गेट बना हुआ है।

पढ़ते हुए जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं दो पीछे खड़े हुए हैं।

ये पड़े हुए हैं कपड़े रखे हुए हैं साइड में भी --

ये क्लास में पढ़ते हुए स्टूडेंट कुछ लड़के बड़े कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं।

ये ग्राउंड दिख रहा है बड़ा-सा स्टेडियम दिखाई दे रहा है ये --

बोर्ड और लगा हुआ है लाइटे जली हुई रात का समय है।

रात है ये अंदर डेकोरेशन लाइट जली हुई है बहोत सारी होटल के अंदर --

दीवार पे लगी हुई है दीवार पर बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई दिख रही हैं पंखा लगा लाइटें लगी हुई हैं ऊपर खाली क्लास --

लंबी-सी एक चट्टान दिखाई दे रही है --

गेट बने हुए है ऊपर भी गोल गोल डिजाइन में गेट बनेगा बड़ी सी जाली लगी हुई है ऊपर नीचे गेट लगा हुआ है।

अजगर दिख रहा हमें दो अजगर दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से ये --

ये दो अजगर रखे हुए है बड़े से --

सामने एक गोल मैदान में सामने गोल सा बना हुआ है एक जेन्ट्स खड़ा हुआ है वहां पर और ये --

ये झूला दिख रहा में सामने बड़ा सा गोल मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है झूले लगे हुए दिख रहे हैं दिन है ये दिन --

अ सामने गेट दिख रहा है इसका लाइट लगी हुई है गेटपर और ये गेट दिखाई दे रहा है अंदर जाने --